पुरानी रखी है बहुत सारी ब बड़ी बड़ी बेडरियां रखी है और सामने एक नीले कलर का --

बड़ा टैंक रखा है जिसका लाल कलर का ढक्कन है और दूसरा भी सामान आसपास बहुत सारा रखा हुआ है।

सफेद लाल ऑरेंज ग्रीन कलर की इसमें अलग अलग फूल लगे हुए हैं।

जो पीले कलर की है जिस परे नीले कलर के कुछ पोस्टर लगे हुए हैं दूसरे भी बाहन जा रहे हैं।

और यहां पर एक ताजिया बनाया गया है जो नीले पीले लाल कलर का है।

यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और कुछ सामान पैकेट्स में बॉक्स में पैक है और कुछ खाली कार्टून पड़े हैं एक झोला टंगा है।

इसमें बहुत सारे रूम बने हुए हैं ये गैलरी है गैलरी में बहुत सारी प्लास्टिक की चेयर लगी है।

बोर्ड लगे हैं जिस पर अलग अलग पोस्टर को लगाया गया है।

सामने से कुछ लोग आ रहे हैं सामने की तरफ गैलरी में टीनजेट लगा है।

यहां पर एक चर्च है और पूरा रूम हॉल जो है वो सफेद कलर का है और सामने जो फ्रंट स्टेज है --

कुछ बाउंड्री बनी हुई है और आसपास पूरा घने बड़े पेड़ छाए हुए हैं।

कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है बहुत सारे लोग निकल कर --

जा रहे हैं और इन बिल्डिंग के सामने सफेद और नीले कलर के कुछ पोस्टर लगे हैं सफेद कलर का टैंक रखा है पानी का।

यहां पर बहुत सारे लाइट लगे हैं सफेद कलर के जो लोहे की रेलिंग पर लगे हुए --

जो येलो रेड और वाइट कलर की है जिसमें सामान पैक रखा है दूसरा सामान भी पड़ा हुआ है।

और सेट करके रखा गया है इनके ऊपर की सरफ दूसरा सामान भी --

कुछ बॉक्स है कुछ बड़ी बॉटल्स है कुछ पैकेट्स है जिन्हें बहोत --

यहां सामने एक दुकान है और दुकान --

इसके आसपास बाउंड्री बनी है जो लाइट रेड कलर की है इसकी गोलाकार डिजाइन में फ्रंट गेट बना है।

जो सफेद नीला है और नीचे की तरफ भी सफेद नीले कलर से ही पेंट एक लोहे का गेट लगा है।

जो लकड़ी की है और ग्रीन कलर की है और पूरा रूम वाइट कलर का है जहां पर ये रखें है।

पीले कलर का पोस्टर लगा है सामने पौधे हैं।

पिंक कलर का है सामने कुछ पौधे लगे हैं सामने की तरफ भी पानी भरा है।

यहां पर बहुत सारी दवाइयां रखी हुई है जो लोहे के रैक है इसमें सेट करके इन्हें रखा गया है।

और ऊपर की तरफ सेल्फ पे जहां पर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं --

ओर यह पूरा रूम लाइट येलो कलर से पैंट है।